यहाँ पे हमको अंदर एक आदमी दिख रहा है जो लाल कलर के टीशर्ट पहना हुआ है।

पेड़ के यहाँ पे छोटी-छोटी डंडिया दिख रही है जो सुखी लकड़िया है हरे रंग के पत्ते दिख रहे है नीले रंग के पत्ते दिखाई दे रहे है सूर्य की रोशनी पड़ती दिखाई रही है पत्थर यहाँ पे पीला दिख रहा है लकड़ी सुखी दिख रही है रंगीन दिखाई दे रही है जमीन में --